इस चित्र में बहुत सारे फुग्गे दिख रहे हैं।

इस चित्र में स्कूल की बस नजर आ रही है।

एक आदमी खड़ा है जिसने लाइनिंग वाली शर्ट पहनी है।

बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं।

एक वोटर कूलर दिखाई दे रहा है।

जो मिनेश ई रजिस्ट्री सेंटर है।

बड़ी-बड़ी लकड़ी से छत को सपोर्ट करी है।

सभी के ऊपर गुलाल लगा हुआ है।

गुलाबी फिरोजी और सफेद रंग के--

इस चित्र मेंएक कॉलोनी दिखाई दे रही है।

इअ कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

सामने दो गाड़ियां खड़ी हैं।

नीचे हमें सूखी घास दिख रही है।

काफी सारे झूले लगे हुए हैं।

एक लड़के नेसफेद शर्ट पहनी है ।

ऑफेशियल दिखाई दे रही है।

और कुछ तोलिए दिख रहे हैं।

जिसमें मछली का गोष मिलता है।

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

एक सफेद घरदिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहोत आदमी नजर आ रहे हैं।

एक डलिया में नीम की पत्तियां रखी हैं।

इस चित्र में एक टैंकर दिखाई दे रहा है।

कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

दो बड़ी-बड़ी फ्रिज रखी हुई है।